सड़क दिखाई दे रही हैं और दिन का समय है घर जो हैं व्हाईट कलर का दिखाई दे रहा है।

और यहां पे देखो एक लड़का खड़ा है जिसकी जींस जिसने जींस पहनी है और ब्राउन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

और ये मेरे को एक ऑफिस का फोटो लग रहा है दिन का समय है।

रात का समय क्योंकि देखो अंधेरा से लग रहा है यार एक लड़का खड़ा है।

वो ये है की सारी चॉकलेट जो है वो अमूल की है जैसे देखो अमूल मिल्क चॉकलेट स्मूद एंड क्रीमी ठीक है।

और देखो पीछे ए_सी भी लगा है दरवाजा भी दिख रहा है एक्चुअली दो दरवाजे नीचे देखो कितनें सारे बाल है शायद इसने बाल कटवाए होंगे।

सभी जो है हरे रंग की है टेबल है टेबल पर एक कप रखे हुए हैं और यह।

अ देखो बाहर कितना कबाड़ा दिखाई दे रहा है सब क खटर मटर मचा रखा इन्होंने दिन का समय अंदर सीढ़ी भी दिखाई दे रही है काम चल रहा है मेरे हिसाब--

अब देखो रोड पे कितने सारे लोग आ जा रहे हैं ठीक है रात का समय है।

लिखा हुआ गाड़ी पर ओम ट्रैवल्स पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं मिट्टी दिखाई दे रही है खास फूस दिखाई दे रही है।

और पीछे की तरफ दो लड़के दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने बैग टांगा हुआ--

साइड में बोर्ड लगा हुआ है। कंपटीशन अकैडमी कोचिंग फॉर एस_एस_सी एच_एस_एस_सी पुलिस बैंकिंग रेलवे आर्मी नेवी एयर फोर्स यह सब लिखा है।

इस फोटो में शाम का समय दिखाई दे रहा है।

स्कूल की बस है जो स्कूल की बस होते है सिर्फ उनका कलर सिर्फ येलो होता है तो ये --

दिन का समय दिखाई दे रहा है बाहर एक नंबर प्लेट से लगे चप्पल का टैग और जो सिग्नल वाली लाइट होती है उसमें रेड लाइट है एक गेट दिखाई दे रहा है जो की--

सामने लिखा हुआ है आशा ब्यूटी पार्लर निचे लिखा है केवल महिलाओं के लिए।

अ कुछ कॉपिज रखी हुई हैं एक सोफा है जो कि ब्राउन कलर का है।

पीछे एक बाल्टी दिखाई दे रही है फर्श जो है वो पत्थर का है।

पीछे कुछ लेडीज ने साड़ी भी पहनी हुई है दिन का समय दिखाई दे रहा है कुछ नंबर्स लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में सामने घर दिखाई दे रहा है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।